चित्र में मुझे लड़का टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ दिखाई दे रहा है और लाइट दिख रही है।

चित्र में मुझे कीबोर्ड रखा दिख रहा है।

चित्र में मुझे बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

मैं एक चित्र देख पा रही हूं चित्र में मुझे एक कंप्यूटर दिख रहा है।

चित्र में मुझे कई सारे पेड़ दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे कई सारे लोग खड़े हुए दीख रहे हैं।

चित्र में मुझे खरगोश बना हुआ दिख रहा है।

चित्र में लड़का हाथ में ये स्मार्ट वॉच पहना हुआ दिख रहा हैं।

चित्र में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

चित्र में लड़कियां जींस पहनी हुई दिख रही हैं।

चित्र में मुझे टेबल दिख रही है चित्र में मुझे--